समुंद्र के इस पार एक जेंट्स खड़ा हुआ है। इस --

एक फैक्ट्री है फैक्ट्री में बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं।

एक जेंट्स भी बैठा दिखाई पड़ रहा है और आस पास--

इस नदी के अंदर एक नाव भी खड़ी हुई है।

यहां पे बोहोत सारे जेंस खड़े हुए हैं और कुछ लेडीज भी हैं।

बस अड्डा जैसा दिखाई पड़ रहा है बस अड्डे में बहुत सारी--

ये एक जिम सेंटर है जिम सेंटर के अंदर एक जेंट्स भी खड़ा हुआ है।

यहां पे एक कमरा जैसा बनाई दिख रहा है और कमरे के सामने एक कार खड़ी हुई है और--

और ढाबे में बहुत छोटे छोटे से कमरे दिखाई पड़ रहे हैं।

शादी आले मंडप पर कुछ जेंट्स खड़े हुए हैं और कुछ जेंट्स बैठे हुए हैं।